बैठे हैं पक्षीयां के पास यहां पर--

और दीवारें बिल्कुल सफेद है यहां पर और यहां पर कोई भी आदमी नहीं है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक बड़ा सा स्टेज है।

दीवार के ऊपर कुछ टोकरियां बनाकर रखी हुई हैं।

यहां पर कुछ टोकरियां दो अलग डिजाइन में है दो यहां पर लंबे गमले की डिजाइन में हैं।